यहाँ पर ये आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिलती हैं ये वहा का हेड ऑफिस भी है बना रखा है।

इस बाइ बाइक यहां पे खड़ी हुई हैं। कोई बाइक टायर वगैराह आदि का मडर्गाड वगैराह खोलकर--

जो नेल्स होते हैं अपने उसमें अलग अलग डिजाइन --

बाहर कूलर भी लग रहा है ऊपर से वो सूरज परभाव आती से लाइटिंग वगैरा फ्री आती है वो भी लगी हुई है वहां पे --

ये एक रेस्टोरेंट है यहां पे अलग अलग टेबल लगी हुई है और उसके ऊपर पिंक से कलर की उसकी कवर बने हुए है।

कहीं औरतें भी हैं कहीं आदमी भी हैं ये पीले कलर का बना हुआ है कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है।

अलग अलग पौधे भी लगा रखे हैं पिंक कलर का पेंट हो रहा है और इसके आसपास में और मकान भी है।

लाइटिंग लगी हुई है मंदिर के ऊपर भी और सारे डिजाइन भी लगी हुई है।

अह कोई ट्रैक्टर जा रहा है और साइड में पत्थर भी रखे हुए हैं।

यहां पे और पोस्टर भी लगा रखे हैं इंद्र लोक सारीज के नाम से लहंगा है ऑरेंज कलर चुन्नी है उसकी --

फ्लोर मतलब की आने जाने की सुविधा बना रखी है और वो लोहे की बन रखी है और बहोत बड़ा --